बर्तन बुरतना सब है उसमें सजाया हुआ है।

इसका बहुत रेट लेता है ये बहुत खूबसूरत फूल है।

यहां पानी सब ऊपर ऊपर निकल रहा है।

नीचे में व्हाइट कलर का और ऊपर में--

चार लाइट लगा है दीवार भी है इसमें ये खूबसूरत जगह है।

यहां पहाड़ है पत्थर पत्थर से पहाड़ बना है।

यहां एक ठो पिंक कलर का घर है।

का पीछे व्हाइट कलर का एक मंदिर है मंदिर है और उसका साइड में गछ है टी_वी_एस स्टाल लोगो है एक जगह--

यहां एक साइकल है खड़ा हुआ है रेड कलर का है और ब्लैक कलर का है।

यहां लड़का सब है एक टेंपो है साइड मे येलो कलर का मंदिर है।

इसमें मोबाइल नंबर नाइन एट सिक्स वन ज़ीरो सिक्स वन टू सेवन ।

ब्राउन कलर का कुछ ले जा रहा है यहाँ एक बाइक है ई स्कूल टाइप में कुछ है जिसमें शटर्स भी लगा है।

इसमें रेड कलर का इटा से बनाया है इसका पीछे का गार्ड साब भी है इसमें ब्लू कलर का कुछ लिखा है और रेड कलर का भी कुछ लिखा है।

यहां लोहा से कुछ कुछ बनाया गया--

यहां मेला लगा है जिसमें झूला सब है हाई जंप सब भी कर सकते हैं।

टी_वी सब है। बहोत सारा सामान भी है यहां परी। बहुत खूबसूरत जगह है। रात टाइम है।

और ऊपर में एक ठो बिस्कुट है।

यहां नदी है फ्लाई ओवर सब भी है और मिट्टी सब भी है यहां पर घास सब भी है।

ये टाटा मोटर्स कंपनी है जिसमें--

ये एक मार्केट है जिसमें एक लड़का गया है कुछ लेने तीन चार ठो लड़का है वहां ब्लैक कलर का सीढ़ी हैं।

ब्राउन कलर का कुछ बिछाया है डाइनिंग टेबल चेयर्स बहुत सारा चीज है वहां पर।

यहां का नजारा क्या खूबसूरत दिख रहा--

सब अपने अपने बोतलस लाए हैं सब कॉपी में लिख रही हैं।